इस तस्वीर में मुझे एक काफी खूबसूरत सा पक्षी दिखाई दे रहा है जो कि पानी के ऊपर चल रहा है और अपना भोजन ढूंढ रहा है।